बड़े हैं यार उनमें कितने सारे फूल रख ले कि इन्होंने कितना मस्त लग रही है यार।

और यार बुक सेलर की दुकान पे जाना है यार मुझे वो ए --

जो बाइकों के पार्ट्स बनते हैं।

तो इसलिये काटा जा रिया ये।

बता वहाँ हम जब छोटे-छोटे थे ना तो हमारे घर वाले लेकर जाते थे।

कोई शोर शराबा नहीं छूलता होगा यहाँ पे --

क्या कहते हैं थोड़ा बहुत कैश लाना था और लोन के बारे में बात करके आनी थी गोल्ड लोन ।

तो उन्होंने यार अपनी हमारी गाड़ी को उठाया जैक द्वारा या कैसे भी।

और इस चर्च में कितनी म-मान्यता होएगी इस चर्च की।

और कितना मस्त लग रहा है यार बैठ के भजन गा रहे हैं ये।

भाई तुझे पता है वो जो मोल खुला है ना।

मैं गया था तो मैं तो अपने घर के दियर साबून लाया था।

एक सेविन में आया था।

अरे यार ये कट्टो कितनी अच्छी लग रही है इस फोटो में।

कितते सारे फूल है और पीले कलर के फूल कितते अच्छे लग रहे हैं गुलाबी कलर के फूल कितते बढ़िया लग रहे हैं।

और कितना अच्छा है यार बहुत बढ़िया है ये चीज।

और क्या कहते हैं ये तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है।

ये यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है ना।

सब बढ़िया काम कर रहे हैं ना यह लोग बाग।